यह एक स्कूल है जिसके अंदर बोहोत सारी बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने बैग लटकाया हुआ है और साइड में चप्पल रखी है।

और उस साइड में एक तार जा रहा है।

साइड में एक स्विच हैं जिसमें कंप्यूटर के तार लगे हैं।

और उ दीवार पर एक ए_सी भी लग रही है।

यह एक मछुआरे की दुकान है जो की मछली बेच रहा है।

और उस साइड में एक लकड़ी की टोकरी भी रखी हुई है।

जो कि जिसने चप्पल नहीं पेहनी है और ये कुर्सी पर बैठा है। और साइड में एक कोका कोला की खाली बॉटल रखी है।

यह एक बोहोत सुंदर बेड है जिसके ऊपर कुछ तकियें व साइड में एक लाइट भी लगी है।

और इसके किनारे बहुत सारे हरे हरे पेड़ भी है।

और ऊपर खंभे पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

ऊपर अलग अलग कलर के टेंट लगे हैं और साइड में डी_जे भी लगे हैं।

सोफे के साइड में एक सिलाई मशीन भी रखी है।

और पीछे एक शिशा भी लगा हुआ है और ऊपर लाइटे भी लगी हुई है।

और साइड में नीचे दो गट्टे भी पड़े हुए हैं।

ऊपर एक बहुत सुंदर लाइट लगी है और इसमें एक व्यक्ति भी है।

और साइड में एक मैप लटका हुआ है और एक विंडो है।

यहां पर ऊपर गेट के एक बोर्ड लगा है महेश सत्संग भवन।

यह एक बहुत सुंदर पूजा चल रही है।

और इसके साइड में एक दीवार है जिस पर बहुत सारे कागज चिपके हुए हैं।

और पेड़ के नीचे दो नीले कलर के ड्रम रखे हुए हैं और एक पेड़ है जिस पर अलग कलर की पत्तियां आई हुई है।

यह एक बहुत सुंदर जिम है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जिम करने के सामन रखे हुए हैं।